बाबा बैजनाथ धाम और यहां पे काफी सारे व्यक्ति पूजा करने आए हैं जो की बहुत सारा भीड़ है।

ये काफी बड़ा रोड दिख रहा है मेरे को जो कि काफी बड़ा है ।

जो कि बहुत ही सारा इसका पार्ट्स खोले गए हैं जो कि दिख रहा है और कुछ पार्ट्स और खोल रहे हैं जो कि एक व्यक्ति बैठ के कार के पीछे खोल रहे हैं।

और वे कार के अंदर भी दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

जस्ट साइड में एक टी_वी है जो की बहुत ही बड़ा है और टी_वी भी ऑन है।

स्टेज के नीचे फ्लावर्स है और फ्लावर्स के पीछे जस्ट पीछे एक पौधा है जोकि काफी सुंदर है।

और मंदिर में काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है जैसे की नीचे मार्बल्स लगाए गए हैं।

और इसके ऊपर एक फैन है जो कि बंद पड़ा है ।

और एक डिस्पोजल भी है और एक वाइन का डिब्बा है जो कि रखे हुए हैं।

ये एक मंदिर है जो की दिखने में काफी बड़ा है।